और यहां स्टेज बना हुआ है जो कि औरेंज रंग का है और साइड में बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए है।

ग्रे कलर का किया हुआ है। और हमें एक खिड़की दिख रही है जो इसमे से रोशनी भी आ रही है।

इस दृश्य में हमें बहुत सारी बिल्डिंग नजर आ रही है और एक एम्बुलेंस भी नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक ऑफिस नजर आ रहा है।

इस दृश्य में हमें बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच नजर आ रही है जो कि डाल्टन गंज की है।

और इसके ग्रिल पर चैन लगा हुआ है और बैंक के अंदर हमें एक टेबल नजर आ--

और इस दृश्य की चर्च के लोगों पर एक लाइट से सजावट की हुई है जो कि लाल रंग की और बहुत ही खूबसूरत--

इसमें लोग चेयर में बैठे हुए है और अपना नंबर का इंतजार कर रहे है।

दृश्य में हमे एक ऑफिस नजर आ रहा है जिसके उपर बहुत दो तीन ऐ_सी भी नजर आ रही--

साइड में हमें कुछ कुर्सियां भी नजर आ रही है और स्टेज के मिडल पार्ट में एक चेयर लगी--

यह दृश्य एक मैरिज हॉल का है जो कोई शादी का लग रहा है और इसमें टेबल और कुर्सियां भी लगी हुई है।

दृश्य में हमे मैरेज हॉल की तस्वीर नजर आ रही--

बहुत सारी फूलों से सजावट और लाइटों से सजावट की गई है।

इस दृश्य में हमें बॉक्स नजर आ रही है जोकि ब्राउन एंड ब्लैक कलर की और इसकी सीलिंग में फु--

मकान के नीचे बहुत सारे लोग खड़े है और मकान के अंदर दो लोग खड़े है और एक टेबल लगी हुई है और साइड साइड में घास भी--